यहां में एक शादी वाला घर--

जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे है।

और यह पीले रंग का है जो अ--

की यहां पर हमें एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

देखने को मिल रहे है और यह बहोत ही साफ सुथरा लग रहा है।

और यहां का डेकोरेशन तो बहोत ही अच्छा दिखाई दे--